यह एक रॉक क्लाइम्बिंग का दृश्य जहाँ पर बहोत से लोग पहाड़ पर चढ़ने की क्रिया को कर रहे हैं।

प्रवेशद्वार पर हम चार ग बाइक देख सकतें हैं। एक व्यक्ती हैं जो नारंगी शर्ट में हैं।

बाएं साइड पीछे में भी एक मीनार दिख रही है | मस्जिद के पीछे एक अधूरी सी बिल्डिंग नज़र आ रही है जो कि पूरी तरह सीमेंटेड नहीं है।

यह सुखवीर सिंह विद्यावती मार्ग बच्चा पार्क का दृश्य है बच्चा पार्क के सामने हमें एक स्विफ्ट डिजायर कार दिख जा रही हैजोकि ब्लैक --

बाए साइड में हरियाली से भरी हुए पेड़े लगी हुई है। साथ ही साथ दो डस्टबिन भी बने हुए है कचरा के लिए।